यहाँ पे बीच में दो-दो बहुत बड़े-बड़े खम्बे बने हुए है और आसपास में बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।

इसमें पीला कलर किया गया है और काला कलर भी किया गया है यहाँ पे जो मशीन रखी गयी है उसमे नीला कलर और सफ़ेद कलर किया गया हैं कुछ लोग भी दिखाई दे रहे --

और एक छोटी सी बच्ची भी दिखाई दे रही है जो घासो के बीच में खड़ी हुई है ।

यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मशीन रही हुई है मशीन काफी बड़ी है और मोटे मोटे लोहे से बनाई गई है।

जिम में लाल कलर पोता गया है और यहाँ पे खम्बे भी बने हुए हैं और कुछ जो हैं पंखे लगे गए है जो की बंद हैं।

और जो उम्म दुकान है उनमें सारी किताबें लगी गई हैं।

दो डेक्स पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे चेयर भी लगाए गए हैं | चेयर का कलर जो है काले कलर का है ऊपर की साइड में बहुत बॉक्स भी बने हुए हैं |

यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग दो-दो तीन-तीन मंजिल है यहाँ पे पीला कलर किया गया है।

यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी मशीन दिखाई दे रही है मशीने काफी मोटी-मोटी और मोटे-मोटे लोहे से बनाई गई है।

और यहाँ पे जो चटाइयाँ रखी गई हैं वो भी नए-नए प्रकार की है इसमें नीले कलर लाल कलर और --

और यहाँ पे आसपास में बहुत सारी बोतले रखी गयी है नीचे की साइड में फर्श है फर्श में टाइल्स लगे हुए है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में खिड़की बनी हुई है इसमें हरा कलर पोता गया है यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है।

यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है निचे की और में फर्श भी है और सामने की और में एक शो-केस रखा गया है।

यहाँ पर तीन चार गेट दिखाई दे रहें हैं जो दरवाजे हैं वो लगे हुए हैं सामने की और में सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं निचे की और में टाइल्स लगे गए हैं।

यहाँ पर कुछ बाइक्स भी दिखाई दे रही है कुछ लोग जो है जा रहे है कुछ लोग सब्जियां खरीद रहे है।

यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग दो मंजिल है जिसमे लाल कलर सफेद कलर और हरा कलर पोता गया है ।

सामने की ओर में बहोत सारे पत्थर पड़े हुए हैं जिसमें सीढ़ीदार बनाया गया है।

इ पीछे की ओर में एक पौधा लगाया गया है जो की झाड़ीदार बनाया गया है पौधे के ऊपर से एक डोरी गयी हुई है यहाँ पथरीली पत्थर हैं उनमे पीला कलर है।

और एक बहुत बड़ी मशीन है मशीन जो है गड्ढा करने वाली है और यहाँ पर बहुत सारे सीमेंटेड और मिट्टी रखी गयी है।